इस तस्वीर में मुझे एक बहुत ही बड़ा हाल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर--

ही कारें लग रही है यह कार शोरूम लग रहा है इसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है किया मोटर्स नाम लिखा हुआ है और एक रात का समय है।

ये एक हॉल है जिसमें एक व्यक्ति आता हुआ भी नजर दे रहा है इसमें--

ये एक मोबाइल सेंटर हो सकता है जिसमें मोबाइल की रखी गई है इंटेक्स कंपनी की रखी गई है।

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं मुझे ए बहुत ही बड़ा सैलून दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत बड़ा कांच लगा हुआ है कांच के ऊपर डिजाइनिंग की गई है।

और वहां पे बहुत भारी भारी मशीने लगाई गई है पत्थर नजर आ रहें हैं।

जोकि लगे हुए दिखाई दे रहे है और बच्चों के खिलौने पीछे की तरफ मे देखूं तो आसमान खुला हुआ नज़र आ रहा है और बहोत बड़े बड़े विशाल पेड़ पौधे दिखाई --

और लाइटें भी दिखाई दे रही है जो की लाइटों की चमक दमक भी दिखाई दे रही है ये एक अति सुंदर दिख दृश्य दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं मुझे रात का दृश्य नजर आ रहा है।

इस तस्वीर मे मैं देख पा रहा हूं ये फूल और मालों का बाजार है जहां फूल मालाएं भी--

इसमें लोग बैठे हुए हैं अपनी दुकान लगे लगाए गए और लोग आते जाते भी दिखाई दे रहे हैं पीछे की तरफ में भी बहुत सारा मार्केट दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जिसमें पानी ही पानी लग रहा है।

और पीछे की तरफ में बड़े बड़े पेड़ पौधे भी हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है यह एक बहुत ही साफ सुथरा नजारा दिखाई दे रहा है आसमान खुला हुआ नजर आ रहा है।

ये मुझे एक फॅन्सी स्टोर भीं लग रहा है जहाँ हर प्रकार के छोटे मोटे सामान मिल जाते हैं मिट्टी के कप बर्तन भीं मिल --

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं मुझे दो मंजिला इमारत दिखाई दे रही है जिसके पास में भी दिखाई दे रहे हैं।